जोकि ब्राउन कलर के है और कुछ वाइट कलर की भी दिख रही है पीछे की तरफ हमें कुछ आ लकड़ी का टेबल जैसा--

यहाँ हम एक हरयाली देख पा रहे हैं जो की घँसो से पोधों से पेड़ों से मिल कर बनी हुई हैं।

हमें बोहोत साड़ी हरियाली देखने को मिल रही हैं। सबसे ज्याद यहाँ पे हमें पेड़ो की डालिये नजर आ रही हैं।

थोड़ा सा आसमान का छोटा सा पार्ट दिख रहा हैं। निचे की औऱ हमें छोटे छोटे अ शेड्स वाले स्टालस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग चलते नजर आ रहे हैं। और ज़मीन रोड रास्ता हैं एक।

एक तरफ हमें पांच मंजिल ईमारत देखने को मिल रही हैं जो के क्रीम कलर की हैं। उसकी विंडोज साफ़ साफ़ नजर आ रही हैं जोकि काफी प्यारी लग रही हैं देखने मैं। और हमें बिच मैं रोड दिखाई दे रहा हैं। एक रास्ता जैसा। एक एंट्री गेट हैं पीछे की और।

और डोर के पीछे गिलास लगा हुआ हैं निचे अ सामने और पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहा हैं कुछ जो टेंगा हुआ हैं पीछे की तरफ।

और हमें दिवार पर लगे हुए कुछ फोटोज और बोर्ड जैसा देखने को मिल रहा है जोकि पूरा ग्लास का है। उसके साइड मैं रखी रैक जोकि एकदम खली हैं जो की नजर आ रही हैं।

आ रहे है। एक बहुत ही प्यारे से एक मेदान को जो की बहोत अच्छे से बनाया गया है। बहुत ही और तरीके से बनाया है उसको।

वह पक्षी बिलकुल ब्लू कलर की पंख नजर आ रहे हैं। उसकी चोंच रॉड रेड कलर की हमें देखने को मिल रही है। उसकी पूछ के पीछे बना हुआ एक सफ़ेद सफ़ेद वह भी नजर आ रहा हैं।

निचे की तरफ हमें काफी यूनिक डिजाइन दिखने को मिल रही है। ऊपर हमें आ खुला आसमान दिख ने को मिल रहा है। पेड़ो की रही भरी डालिया भी नजर आ रही है साइड साइड में बिच बिच में।

यहाँ हम लेडीज प्रोडक्ट को देक पा रहे हैं। जहा पर हमें येलो टेबल नजर आ रहे हैं।

कुछ पॉट्स जैसी चीज़े राखी हुई हैं। ब्लैक कारपेट या फिर रोड हैं जोके हमें नजर आ रहा हैं।